यहां पर मशीन कुलर टीवी एल_सी_डी और गद्दे रखे हुए हैं।

यह एक लकड़ी का गोदाम है यहां पर बहुत सारे लकड़ी का सामान बना हुआ खड़ा है।

यहां पर फर्श हो रहा है फर्श टूटा हुआ नजर आ रहा है।

छत पर भी सफेद रंग की टाइलें लगी हुई हैं। एक पंख लगा हुआ है और सामने शीशा लगा हुआ है।

इस पानी में बहुत से पिल की पिलर की तस्वीरे दिखाई दे रही है।

शामियाने सफेद और ऑरेंज रंग के है और दो तीन झंडे लगे हुए हैं।

और एक एक खंभा खड़ा है जो हमें नजर आ रहा है।

यह एक पहाड़ की चट्टान है यहां पर ऊपर से पानी आ रहा है।

एक दुकान खुल रही है और इस बराबर में एक जिन्ना लोहे का चढ़ रहा है।

यह एक रोड है यहां पर बहुत बड़ा पेड़ लग रहा है एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

इसमें दीवालों पर रंग बिरंगे तस्वीरा बना बनाकर लगा रखी है दो तीन बोतला रखी है।

यहां पर बहुत सारी कारे खड़ी हैं कार का रंग सफेद और काला है।

इसके चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है दूसरी मंजिल पर ऊपर नीचे चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है।

एक विंडो में एक माइक लगा हुआ है। इसके बाहर ईंटा बिछी हुई हैं। दो गेट खुली हुई हैं। गेट का रंग कत्थई रंग का है।

यह एक तस्वीर है इसके ऊपर छपर डले हुए हैं टीन की चादर डली हुई है।

और इसके पीछे बहुत सारे पेड़ खड़े हैं और एक और गेट खुल रहा है।

इस पर तार जा रहे हैं और यहां से इसके बराबर में कच्ची जमीन है।

बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं जैसे गुब्बारे टेडीबियर तोता कार गुड़िया रंग बिरंगी कुर्सियां एक चारपाई पड़ी है।

एक काउंटर पर सामान रखा हुआ है एक आदमी काउंटर के बाहर खड़ा है।

यह एक बाजार है बाजार में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

वॉकर का रंग हरा पीला फिरोजी रंग का है और--

एक दुकान आधी दिख रही है दूसरी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का सामान रक्खा हुआ है और इसके शटर पर लाल पेंट हो रहा है।

पांच छह मछुआरे बैठे हुए हैं इन्होंने तिरपाल बिछा रखी है।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सारे इनवर्टर रखे हैं।

इस पर तार जा रहा है एक शटर लगा हुआ है इसमें दुकान में पलास्टिक का हर सामान है।

और एक तस्वीर लग रही है इस तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

काले रंग की कार खड़ी है इसके बराबर में एक ट्रांसफॉर्म रखा हुआ है।

और इस पर शीशे के गेट लगे हुए हैं एक शीशे में तस्वीर दिख रही है।